ये एक रेस्टोरेंट है कुछ लाइट लगी हैं जिनका कलर हरा है साइड में एक टिन शेड है जिसमें दो पिल्लर लगे हैं।

रेल्वे ट्रैक के साइड मे लोहे के बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कुछ लंबे-लंबे से चपटे से एक लोहे की बॉल लगी है।

और उसके ऊपर टोस्ट पड़ा --

और पीछे आसमान है। दूर बड़ी घास है। पास मे दो बड़े वृक्ष है जिसका कलर --

बड़ा सा नहर है नहर के पास बड़ी सी एक दीवार है।

बड़ी सी नदी है। नदी के पास दूर-दूर तक बहोत घने और छोटे-छोटे पौधे पेंड वृक्ष हैं और थोड़े से घर भी बने हुए है।

जिनका कलर सफ़ेद और वृक्षों का कलर हरे कलर है। पानी गन्दा है। नदी बोहोत बड़ी है।

गुलाबी कलर का कलर है बाहर एक बड़ा सा मैदान है मैदान में एक वॉलीबॉल खेलने का हॉल बना है पीछे --